और यहा अनेक सारे प्रकार की मछलिया स्टोर मे उपलब्ध है।

यहा पे एक मंदिर है और वहां पे बहुत सारे पुजारी लोग बैठे हुए है वहा पे--

सामान उपलब्ध हैं यहाँ पे अनेक प्रकार का सामान मिलता है यहा बहुत अच्छा जगह है जहा पे सभी सामान कॉलेक्ट होते हैं।

एक अपार्टमेन्ट में है जिसमे बहुत सारी फोर व्हीलर गाड़ियां--

लगी हुयी है इसमें आग बुझाने का भी प्रबंध किया गया है।

फिर अगल बगल में टावर टाइप का भी लगा हुआ है सीढ़ी भी नजर आ रहा है बोरा में सामान रखा हुआ है और कर्मचारी लोग उठा रहे हैं अपने माथे पे।

अनेक प्रकार की वृक्ष और यह जो नीचे फर्श टाइप का बना हुआ है और बच्चे लोग जूता पहने हुए है।

इसके बगल से एक नए एक फोस्टर लगा हुआ है जिस का नाम मंगलम अपार्टमेंट और इसके आसपास बांस भी लगा हुआ है।

य बहुत बड़ा फील्ड है इसमें दो ट्रैक्टर और एक जे_सी_बी लगा हुआ है इसके बगल में वृक्ष है।